कुछ लोग नीचे ग्रीन कलर की चटाई में बैठे हुए हैं। चप्पल रखी हुई दिख रही है साइड में।

बीच में दरवाजे में काँच लगा है। काँच के बाहर भी लोग दिख रहे हैं। ऊपर लाइट लगे हुए दिख रहे हैं और यहाँ कुछ --

यह एक पहाड़ी दिख रही है बहोत बड़ी। यहाँ पे कुछ लोग भी दिख रहे हैं और यहां कुछ पत्थर दिख रहे हैं। यहाँ पहाड़ी के नीचे पानी --

खड़ी हैं। आस-पास कुछ छोटे से पेड़ दिख रहे हैं। एक घर दिख रहा है घर की बहोत सारी खिड़कियाँ दिख रही हैं। ऊपर बादल दिख रहे है वाइट कलर के --